यहाँ दो मंदिर दिखाई दे रहे है जो कि वाइट कलर के है दोनों के ऊपर झंडे लगे दिखाई दे रही जो कि रेड कलर की तथा इसमें नीचे कई सारे लोग देख --

तथा यहाँ कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं लाइटें लगी दिखाई दे रही हैं।

पहाड़ दिखाई दे रहे है पहाड़ के नीचे यहाँ एक खाली जगह दिखाई दे रही है।